पास में एक पेड़ भी नज़र आ रहा है।

बाजू में दो आदमी भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

पांचो लेडीज अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां दो औरते खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहं दोनों तरफ खिड़कियां भी लगी हुईं दिख रहीं हैं।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

यहां दो दुकाने दिख रही है।

टेबल पर एक लैपटॉप एक प्रिंटर भी रखा हुआ है।

बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिख रही हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक खाली मैदान दिख रहा हैं।

मानो यह सारे पुतले राजस्थानी पोशाक पेहने हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में लकड़ी के अलग अलग दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक आदमी--